--दिखाई दे रहे है जहाँ जहाँ गार्डन गार्डन बना हुआ है छोटे-छोटे पेड़ हैं घास हैं खिड़किया दिखाई दे रहे हैं।

पौधे है लाइट बिजली है पेड़- पौधे है बगल मे घर है कुछ लोग दिखाई दे रहे है कार्टून लगे हुए है बाहर--